लिनक्स पर eclipse संस्थापन के इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप उबंटू और redhat operating systems पर eclipse संस्थापित करना सीखेंगे
इस tutorial के लिए हम उबंटू 1110 का उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपके पास होना चाहिए
internet से जुडा होना और लिनक्स में terminal का उपयोग करने का ज्ञान
आपके पास root access या sudo की अनुमति भी होनी चाहिए
यदि आपको root या sudo के बारे में पता नहीं है तो चिंता न करें
आप tutorial के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं
यदि आप proxy का उपयोग करने वाले network पर हो तो आपको proxy का access करना ही चाहिए
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
दिखाये गए commands का उपयोग करके अब हमे उबंटू पर eclipse संस्थापित करना चाहिए
और redhat पर भी ऐसा ही करने के लिए कुछ परिवर्तनो के बारे में भी सीखना आवश्यक है
अब terminal खोलें
control alt और t दबाएँ
यह उबंटू में terminal की शुरूआत करता है
यदि आप proxy का उपयोग करने वाले network पर हो तो आपको उसे terminal पर set करना होगा
यदि आपको पता नहीं proxy क्या है तो आप उपयोगित network पर नही हो सकते
तो आप यह step छोड़ सकते हैं
जो proxy का उपयोग कर रहे हैं उनको इसे निर्धारित करना होगा
यहाँ दो प्रकार की proxy हैं
एक के लिए username और password की आवश्यकता है जबकि दूसरे के लिए नहीं
संबंधित व्यक्ति से आप उपयोग कर रहे proxy के प्रकार का पता लगाएँ
terminal पर type करें sudo space hyphen s
लेकिन इसे prompted करें password type करें
ध्यान दें जैसे आप password type करें यहाँ asterisk या अन्य symbols के रूप में कोई भी फीडबैक नहीं है enter दबाएं
ध्यान दें कि prompt symbol dollar से hash में बदल गया है
अब type करें
इस command में proxy authentication के लिए tsuser यूजरनेम और tspwd password है
कृपया अपनी जरूरत के अनुरूप इन values को बदलें
10 24 0 2 proxy का host address है और 8080 port number है
अपनी जरूरत के अनुरूप इन विवरणों को भी बदलें enter दबाएँ
कुछ मामलों में network को authentication की आवश्यकता नहीं होती है
ऐसे मामलों में यूज़रनेम और password का हिस्सा रिक्त छोड़ा जा सकता है
मेरे proxy को authentication की आवश्यकता नहीं है मैं उन विवरणो को मिटा रहा हूँ
पूर्व command के लिए अप arrow दबाएं और यूज़रनेम और password मिटाएँ और
enter दबाएं
ये कमाण्ड्स http proxy सेट करता है हमें पता है https proxy कैसे सेट करते है
पूर्व command पर जाने लिए अप arrow दबाएं और http से https में परिवर्तन के लिए s type करें और enter दबाएँ
हमने सफलतापूर्वक proxy set की है
normal prompt पर लौटने के लिए ctrl + d दबाएं
clear type करें और screen clear करने के लिए enter दबाएं
अब हम eclipse संस्थापित करेंगे
type करें sudo space apt hyphen get space update
यह command सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयर की सूची दर्शाता है enter दबाएं
आपके internet की गति के अनुसार यह सॉफ्टवेयर की सूची दर्शाने में समय लेता है
operation पूरा हो गया है जब terminal dollar prompt returns करता है clear type करें और screen clear करने के लिए enter दबाएं
type करें sudo space apt hypen get space install space eclipse और enter दबाएं
यह command system पर eclipse सॉफ्टवेयर लाकर संस्थापित करता है
line पर ध्यान दें जो दर्शाती है needs to get 108 mb
आपके system के आधार पर यह संख्या भिन्न होगी और आपके इंटरनेट की गति के आधार पर
packages दर्शाने के लिए भिन्न समय लगेगा
y याn के prompt पर y type करें और enter दबाएं
सारे जरूरी packages downloaded किए हैं और system में खोल दिए हैं
जब terminal dollar prompt पर लौटता तब संस्थापन पूर्ण होता है
अब सत्यापित करें यदि eclipse संस्थापित हुआ है और system पर उपलब्ध है
alt + f2 दबाएं dialog box में eclipse type करें और enter दबाएं
यह eclipse application की शुरूआत करता है यदि eclipse संस्थापित नहीं है तो यह application नहीं खोलेगा
हमें workspace launcher prompt मिलेगा आगे बढ़ने के लिए ok click करें
और हमें welcome to eclipse पेज मिलता है इसका अर्थ है system पर eclipse सफलतापूर्वक संस्थापित हुआ है
debian kubuntu और xubuntu पर eclipse संस्थापित करने की प्रक्रिया उबंटु के समान ही है
redhat पर eclipse संस्थापित करने की प्रक्रिया उबंटु के समान ही है
फर्क सिर्फ लाने और संस्थापित करने के लिए उपयोगित कमांड्स में है
सॉफ्टेवेयर की सूची लाने के लिए उपयोग करें sudo space yum space update
eclipse संस्थापित करने के लिए उपयोग करें sudo space yum space install space eclipse
fedora centos और suselinux पर eclipse संस्थापित करने की प्रक्रिया redhat के समान ही है
इसी के साथ हम इस tutorial की समाप्ति पर आ गए हैं
उबंटू और समान operating systems और redhat और समान operating systems पर eclipse कैसे संस्थापित करना है इसे हमने देखा
इस tutorial के लिए नियतकार्य के रूप में
अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम पता करें जिसमें eclipse के लिए समान संस्थापन प्रक्रिया हो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद